जैसा की आप देख सकते है कि ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पर दूध डेरी की एक दुकान है डेरी डेरी प्रोडक्ट की यहाँ पर दो लोग--

यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक काफी पुराना ब्रिज बना हुआ है जिसकी रेलिंग ब्लू और वाईट कलर की है।

जैसा की आप देख सकते हैं स्टेज पर एक दूल्हा खड़ा हुआ है जो गोल्डन और महरून कलर की शेरवानी पहने हुए है।

यहाँ पर आप सब लोग देख सकते है ये एक शादी का गार्डन है जहा पर बहोत सुंदर बहोत बड़ी स्टेज बनी हुई है।

यहाँ पर बच्चे पर्पल कलर की मैरून कलर की ड्रेस पहने हुए है।

यहाँ का नजारा बहोत सुन्दर लग रहा है यहाँ पर पीछे की तरफ बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं और कुछ घर भी बने हुए हैं।

यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं ये एक गोडाउन है जहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है।

इसमें ऊपर बोर्ड लगा है ग्राहक सेवा केंद्र लोक सेवा केंद्र। यहाँ पर इसका बहोत बड़ा बोर्ड लगा है यहाँ पर काफी सारे लोग भी खड़े हैं।